कुछ चलने वाली मशीनें नजर आ रही है।

ये एक बेकरी की तस्वीर है जिसका नाम फैंसी बेकरी एंड स्वीट्स है।

ऊपर आसमान में चांद नजर आ रहा है।

कुछ शर्ट है कुछ शर्ट है जो बहुत सारे कलर में है ब्लैक ब्राउन रेड स्काई ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं।

उन पत्थरों पर कुछ लोग बैठे हैं।

ये एक दूध की फैक्ट्री है जिसका नाम बेंगलुरु को आप मिल्क यूनियन लिमिटेड है।

और यहां की दीवारों का रंग ब्राउन कलर है।

और एक आदमी है जो छोटा बच्चे को लेकर जा रहा है।

और बहुत सारे पंखे लगे हैं और ट्यूबलाइटस भी है।

ये एक थिएटर नजर आ रहा है जिसका पर्दा बिल्कुल सफेद है।

ये एक ओपन जगह नजर आ रही है।

सूरज की रोशनी भी नजर आ रही है।

ये एक ऑफिस नुमा चीज लग रही है।

यहां पर बहोत सारी वेटिंग करने के लिए कुर्सियां डली है।

एंबुलेंस भी नजर आ रही है।

उसमें से एक आदमी ने सर पर ईंट उठाया हुआ है।

बहोत सारी कुर्सियां डली है।

सबके हाथों में प्लेट नजर आ रही है।

और साइड में फूल नजर आ रहे हैं।

इसके बहोत सारे पाइप नजर आ रहे हैं।

ये एक बेडरूम की तस्वीर है जहां पर पलंग है।

इसका नंबर यूपी सिक्स फाइव बीबी सेवन थ्री नाइन थ्री है।

मशीन का रंग पीला है।

और रेती रेती जैसी नजर आ रही है।

बैडमिंटन रैकेट भी नजर आ रही है।

और गेट पर एक औरत नजर आ रही है।

नीचे की तरफ बहोत ज्यादा पेड़ दिखाई दे रहे है।

और एक टावर नजर आ रहा है।